पानी को साफ करने के फिल्टर टंगे हुए हैं।

दिवालों पर भी टंगी दिखाई दे रही है।

जिसमे बहोत अच्छा डिजाइन किया गया है लाइटों से भी पर्दो से भी।

जिस पे बहुत सारी औरतें मैट बिछा के पड़ी हुई हैं।

और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

जिसमें बहोत सारा समान रखा है खाने का--

और साइड पर एक काउंटर पे लैपटॉप और स्पीकर दिखाई दे रहे हैं।

उसके जमीन पर पत्ते नीरे पड़े हुए हैं।

और एक लड़का अपनी फोटो खींच रहा है। जिस जब और सरियों का गेट बना खा है।

और उनमें कुछ फूल भी बनाए हुए हैं।

यह एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग है।

दीवार पर एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है श्री धाम--

यह एक बहोत बड़ा कॉलेज दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सामान भी रखा है अलमारी में प्लास्टिक --

जिसपे तिरंगा झंडा है और कुछ फाइलें भी धरी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत अच्छा टेंट लगा हुआ है अलग अलग कलर का।

आसपास भी बहुत सारी औरतें आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके पास स्विमिंग पूल है जिसमे बच्चे नहा रहे हैं।

बहुत सारा पन्ना बिछाए गया हुआ है।

इस फोटो में बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसके बाद तीन कार खड़ी हुई है।